इस पिक्चर में एक सैलून की वो है पिक है जो कि दो तीन लड़के है जिनकी बाल कटिंग हो रही है एक लड़का है जिसने एलो कलर की --

पिक्चर में दुर्गा जी की मूर्ति रखी हुई हैं जो की तीन दुर्गा जी हैं और एक गणपति जी है शेर है।

इस पिक्चर में एक सादी हॉल है जो कि आसमानी कलर और फूल हैं जो कि ऑरेंज हैं वाइट हैं येलो हैं कलर के हैं और मंदिर टाईप की डिज़ाइन है और एक--

जोकि क्रीम कलर का शटर है काँच लगा हुआ है और बोहोत सारी बाइक रखी हुई है और एक आन्टी मुसलमान है जो बुर्खा पहने हुए है एक लड़का हैं।

पिक्चर में एक लड़का दिख रहा है जो स्काई ब्लू कलर की शर्ट पहने हुए है सिलेटी कलर का टी-शर्ट पहने हुए है व्हाइट कलर की हेड फोंस लगाए हुए हैं।

पिक्चर मे एक येल्लो कलर और लाइट येल्लो से कलर का घर है और एक व्हाइट कलर की दीवाल है और ब्राउन सी कलर की चार पाँच बाई जा रहे है जो साड़ी पहने हुए एक लेडिस है जिन्होंने व्हाइट कलर --

पिक्चर में एक नीचे पनी बिछी हुई है स्कायबलू कलर की उसमें बहुत सारी छोटी छोटी मछलियाँ दिख रही है।

कलर वाइट कलर की शर्ट --